यहाँ पे नीचे फर्श दिखाई दे रहा है जहाँ हरी-हरी घास दिखाई दे रही है एक ऑटो दिखाई दे रहा है जो कि पीले रंग का है जिसके उपर एक छत दिखाई दे रही है।

ऊपर एक ढलान दिखाई दे रहा है यहाँ पर अ रेत पड़ी हुई है पहाड़ दिखाई दे रहें हैं पहाड़ बहोत ऊंचे हैं चारों तरफ पहाड़ पहाड़ों दिखाई दे रहें हैं।

कुछ लोग मैदान मे दिखाई दे रहे हैं टीन शेड दिखाई दे रहा है टीन शेड पे पिलर्स लगे हुए हैं यहाँ पर कई सारे लोग खड़े हुए हैं निचे का पार्ट दिखाई दे रहा है जो की पे पड़ा हुआ है लोग इधर उधर जा रहे हैं दूर-दूर ये स्टेडियम बहोत बड़ा है।

बलिया बहोद ज्यादा मात्रा मे दिखाई दे रही है पीछे देखने पर यहाँ पे और भी सामान पड़ा हुआ है लकड़ियाँ पड़ी हुई है दिन का समय है रोशनी बाहर से आ रही है मकान बन रहा है।

बहोत बड़ी नदी दिखाई दे रही है नदी में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है यह पानी बहोत दूर तक दिखाई दे रहा है पीछे देखने पर बड़े-बड़े पहाड़ दिखाई दे रहै हैं पहाड़ बहोत दूर तक फैले हुए हैं किनारा दिखाई दे रहा है किनारो पर --

एक मैदान दिखाई दे रहा है मैदान में हरी-हरी घास दिखाई दे रही है। एक आदमी दिखाई दे रहा है। सामने की तरफ एक हैलोजन लाइट लगी हुई है जो की खंबे पे लगी हुई है व चमक रही है उसकी रोशनी नीचे --

सामने एक मेज रखी है जिसपे दो बोतले रखी है एक थर्मस रखा है जो जिस पर लाल रंग नीले रंग की पिन्नी चढ़ी है नीले रंग का ढकन दिखाई दे रहा है शीशा दिखाई दे रहा है लाइट दिखाई दे रही है लाइट जल रही हैं।

कमरा दिखाई दे रहा है जहाँ पे दीवार दिखाई दे रही है दीवार नीले रंग की है पीछे देखने पर एक बोर्ड लगा है जो की काले रंग के है दरवाजा दिखाई दे रहा है दरवाजे के ऊपर काले रंग के बोर्ड लगे हुए है पीछे सिलेंडर रखा हुआ है जो की लाल रंग का है नीचे कुर्सियाँ रखी जो की --

और एक खेत दिखाई दे रहा हैं खेत में हरी-हरी घास दिखाई दे रही है छोटे-छोटे पेड़ उ प पौधे उगे हुए हैं मिट्टी दिखाई दे रही है मिट्टी बहुत दूर तक फैली हुई हैं पीछे उप् पानी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक फार्म हाउस है यहाँ पर कुछ रैक दिखाई दे रही हैं रैकों के उपर जो जालियां लगी हुई हैं जालियां में बहोत ज्यादा मात्रा में बतक और मुर्गियां दिखाई दे रही हैं मुर्गियां की चोंच लाल रंग की है।

एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क पे मिट्टी फैली हुई है एक ठेला दिखाई दे रहा है ठेले पे एक तराजू रखा है एक बर्तन रखा है स्टील का कुछ सब्जियां रखी हैं जो कि बोरे में रखी हैं एक आदमी बैठा हुआ है वह सब्जी बेच--

एक फर्श दिखाई दे रहा है फर्श के सामने एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमे कांस्ट्रक्शं का काम चल रहा है। बल्लिया लगी हुई हैं कई सारे फ्लोर्स बन रहें हैं। इसपे निर्माण का कार्य चल रहा है। सामने पर देखने पर बहोत सारी बल्लिया कचरा सामने पड़ा हुआ है। नीचे एक ड्रम भी पड़ा हुआ है दो लोग खड़े हैं।

अपने मुँह पर मास्क लगा रखा है उसके हाथ में एक सफ़ेद रंग का काग़ज़ है उसने सिर पर कैप लगा रखी है। वेल ये लोग आपस में बात कर रहे हैं।

ये एक दीवार दिखाई दे रही है जहाँ पर पीछे एक उम्म गेट लगा हुआ है जोकी सफेद रंग का है गेट का चटकुणा दिखाई दे रहा है जोकी स्टील का बना हुआ है।